जो की लाल और हरा सजावट हुआ है उसका वो शायद किसी गाड़ी पे रखा है रथ जेसा लग रहा है।

ओर चबुतर पे जाने के लिए सीढ़ियां भी है और आसपास पेड़ पौधे और घास है।

ओर कमरे की छते लाइटे जल रही है और भी कुर्सियां कमरे में रखी हुई है और बड़े बड़े सीसे लगे हुए हैं।